और आती है यहाँ पे स्नान करने के लिए बहुत सारी महिलाये हैं।

स्टेज पे दूहला- दुल्हन खड़े है दुल्हन ने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ है और दूल्हे ने शेरवानी पहनी हैं ।

उसने मास्क लगाया हुआ है उस --

के बगल मे तीन गैस पंप है जो की आक्सीजन लेने के काम आते हैं ।

यह एक रेलवे स्टेशन की फोटो है जहाँ पर लोग आते है अपनी-अपनी ट्रेन पकड़ते है।

ट्रेन में सफर किया जाता है और यह रेलवे स्टेशन के किनारे साइड बोहोत सारे रिक्शे खड़े है कुछ लोग रिक्शे पे से उतर रहे हैं।

कुछ लोग सिडिओ पे खड़े होकर देख रहे है और कुछ लोग नांव मे बैठ के घूम रहे है।

और पीछे अनार और बहुत सारे फल टंगे हुए है जैसे की --

यह एक होटल के अंदर की तस्वीर हैं जहाँ पे यह छोटा-सा कैफ हैं यह एक छोटा सा कैफ़े हैं जहाँ पे खाने पीने का सामान मिलता हैं।

--है और इसके अंदर एक छोटा सा सुरंग है जिसके अंदर यह लड़का घूँस रहा हैं ।

ऑफिस में एक बड़ा-सा स्क्रीन हैजिसके ऊपर वह आदमी अपना प्रेजेंटेशन इन चारो लोगो को बता रहा है।

बनाएंगे रोटियां बनायेंगे चावल बनाएंगे फिर इस-इस खाने को लोगो तक पहुचाया जाता है।